और लाइट भी लगी हुई है और कैमरा भी लगा हुआ है और पर्दे भी लगे हुए हैं।

और एक दुकान पर पीले व लाल अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है।

इस फोटो में एक सोफा नजर आ रहा है।

इस इमेज में कुछ कछुए नजर आ रहे हैं।

यह किसी जिम के बाहर का फोटो है।

यह इमेज मुझे किसी कंपनी की लग रही है।

और इस पर स्टील की कुछ डंडे भी खड़े हुए हैं और इसमें एक आदमी भी खड़ा हुआ है।

और इसके बाहर एक नाली भी नजर आ रही है।

और इसमें बहोत सारे पेड़ पौधे भी देख रहे हैं।

इसमे पानी पीने की टोंटियां भी दिखाई दे रही हैं और इसमें एक पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

और साइड में एक रेस्टोरेंट भी है और उस पर कुछ लिखा हुआ है।